रेल्वे स्टेशन हैं डस्ट बिन रखे हुए हैं ठेले रखे हुए हैं।

सफेद कार खड़ी है पीछे रेस्टोरेंट है कूलर लगा हुआ है अंधेरा है।

झील है झील के बीचो बिच हरा भरा पेड़ लगा है।